तेल डलवाने के लिए कार में तेल डलवाने के लिए ट्रेक्टर में तेल डलवाने के लिए ये हमारे जो ख़त्म हो जाते हैं पेट्रोल का ई --

पहुँचने अधिक सुविधा देती है हमारे बगल आस-पास में पेट्रोल पंप मिलते तो अच्छी सुविधा मिलती है।

शासन चलते तो वहाँ पढ़ाई गुरु नानक सब आ के बहुत ही दिन में पढ़ाई किए थे।

इतने बड़े-बड़े ट्रैन जो है ना ये पुल के सामने से --

वेलकम तू तो आ गया हम देखने के लिए --

बड़ी-बड़ी महलों अ महल राजाओं को देखने के लिए --

उसमें हम लोग एक जाने थे घूरने के लिए बहोत ही मंदपंसद देख के बहोत खुश --

बहुत सारे स्टेडियम में हमें देखने के लिए मिलते हैं भोलीबाल जो खेलते हैं।

हमें ये डेयरी जाने के लिए हमें सारे व्यवस्था मिलती है दुकान पे या --

तो वहाँ पे सारे बच्चे हमारे --

देखिये जिम जो जाते हैं हम अपना --

ये हम अपने मसल्स को फुलाने के लिए बॉडी --

किराने के सारे सामान उपलब्ध है मिलते है।